आप लोग ये जगह पे आए बहुत ही अच्छा जगह है फुलवारी टाइप का लगा रहा है मुझे ये चाय का बागान लग रहा है आपको क्या लग रहा है।

बहुत सारी साई- साइकिलें रखी हैं ऑटो लगी हुई है

ये मेहनती लोग होते हैं जो छोटे-छोटे काउंटर लगाते हैं और अपना गुज़ारा करते हैं ।

यह मेहनती लोग हैं। अच्छे से काम करते हैं। मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं। अच्छा --

यह जंगल है बाँस की खेती है यह यहाँ बाँस उगता है हर जगह पेड़ पौधा है यहां जानवर रहती है।

ये गांव में जाता है जो ई भी ए ऊपर जाना हो ये जंगल पार करना पड़ता है ये जंगल--